विंडो है और एक गेट है गेट के स बाहर चार पाँच गाड़ियां रखे हुए है।

ये एक मंदिर है जिसके पास में बहोत सारे पेड़ है गेट है और लाइट में--

और बहुत सारा सामान इधर उधर पड़ा है एक टेबल है तीन चार चेयर है।

ये छोटा सा पार्क है जिसमें झूला स्लाइडर --

साबुन और बहोत सारा लशून बहोत सारा खाने का चीज रखा हुआ है।

एक एल_सी_डी है दो चेयर है बहोत सारा सामान सजा के रखा हुआ है।

और एक गोदरेज है सामान रखने के लिए और विंडो ओपन है।

और कांच का टेबल पड़ा हुआ है और दूसरे साइड पर बहोत सारा डोर है।

डोर पे स्क्रीन टंगा हुआ है और एक--

ये एक बहोत बड़ा इंजिन ऑइल का दुकान है जिसमें बहोत सारे सेल्स हैं।

ये एक पुस्तक भंडार है जिसके अंदर बहोत सारा पुस्तक मिलता है।